बिल्डिंग है इधर बहुत सारी इधर बिल्डिंग है इधर बहुत सारी स्कूटीज है घर है पेड़ है।

यह एक जिम है जहां पर बहुत सारे डमबल्स हैं चार पाँच आदमी हैं पअप--

वह जंगल्स टाइप पेड़ है ऊपर स्काइ है ऊपर अ अ एक--

यह एक है इधर पेड़ पौधा है इधर बहुत सारी ग्रीनरी है हरियाली है इधर बहु--

इधर ब इधर बर्गर के लिए पाव रहता हैं वो बनता हैं पिज़्जा के लिए वो रहता हैं वो बिस्किट्स बनते --

पर अ छतरी जैसा कुछ है ब्ला बस रेड कलर की है बाइक ब्लैक कलर की है उधर-- --

यह एक मंदिर है इधर इध प इधर पेड़ इधर पेड़ है।

यह एक भैंस है एक गा एक एक गांव है उसमें एक एक घर में --

अह पच्चीस सेकंड डला है अह यह एक यह ए यह एक पेड़ है गार्डन है उधर बहुत सा--